जबकि इसके ऊपर में उजले रंग की बल्ब जल रही है।

और उसके ऊपर टेबल के ऊपर भी सामानें रखी गई है।

यह एक प्रखंड कार्यालय है।

उसी पिलर के पास बांस की जाली बनाई हुई है।

और दीवालें के बगल में एक पोल खड़ी है।

यह एक दुकानें है जिसके ऊपर स्नेक बार लिखा हुआ--

और नीचे में सामानों रखी हुई है।

हरा उजले रंग के टीशर्ट रेलिंग को पकड़े हुए है।

और एक काला रंग की कुर्सी है।

यह एक दुकान है जिस पे शटर ब्लू रंग की है।

पीछे एक आदमी बैठा हुआ है।

लाल टेबल रखी हुई--

और ऊपर मे उजला रंग की बल्ब जल रही है।

दुकानें हैं उसमें बहुत सारी समाने रखी हुई है।

और एक आदमी पिला शर्ट पहन कर हाथ में प्लेट पकड़ कर खाना खा रहा

सभी लोग के बगल में ही एक लड़का खड़ा है जोकि--

और पास में एक पेड़ है।

और पेड़ के पीछे में दो तरह की पीले रंग की गाड़ी खड़ी है।

एक पत्थर के ऊपर काले रंग की जुतें हैं।

इसमें के बीच में एक उजला रंग का टेबल है।

पीछे में लाल रंग की कुर्सी

और एक हादमी उसी के पीठ के ऊपर हाथ रखे हुए हैं।